ये पार्क है और पार्क में बगीचा है ये यहाँ पे फिसल पट्टी है जिस में बच्चे लोग खेल खेलते है।

ऐ गेम मशीन है दो लोग खड़े है और उसे बोल रहे है एक पेंसिल पेन है एक लोअर टी शर्ट पहना है।

यहाँ पे जिम है और जिम में बहोत सारे वेट लोस करने के लिए मशीने है और यहाँ पे एक लड़का है जो करने वाली मशीन पे अ एक्सरसाईज कर रहा है।